चित्र मे एक मैदान नजर आ रहा है। कुछ लोगोने एक जैसे कपड़े पहने हुए है। मैदान को रम रंगी बिरंगी कपड़ो से सजाया हुआ है।

चित्र मे एक एंट्री गेट बनाया है जिसे फूलों से सजाया हुआ है जिसपे रंगी-बिरंगे लाइटे पड़ रही है एक आदमी बाहर खड़ा है।

चित्र मे एक ग्राउंड नजर आ रहा है।

इमारत के पीछे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे है।

एक लड़का सड़क पर खराटी से झाड़ू मार रहा है।

चित्र मे एक आदमी पेट के बल लेटा हुआ है। जिसके एक हात मे तीन अंघुटिया है।

चित्र मे एक बस नजर आ रही है। के आजू बाजू कई सारे लोग खड़े हैं।